ये नदी के ऊपर यातायात करने वाला साधन है जिसे हम नाव कहते हैं इससे हम अ एक नदी के एक पार से दूसरे पार को जाते हैं।

ये एक बार्बर है जो सबके बाल को काटता है और जिसे हम कुछ पैसे डाल देके अपना बाल कटवाते है।